सामने एक रस्ता वाइट और रेड का टाइल्स से बिछाया गया है।

इधर बहुत सारा पेड़ है।

एक रेड कलर का पुतला है जो कि पहना है रेड कलर का जर्सी ।

यह एक पेट्रोल पंप है और दो आदमीन है और उधर बहुत सारा कार है एक बास है ऊपर में लाइट जल रहा है।

बहुत सारा ऊपर में बल्ब जल रहे हैं।

पोम कैंपस है शैंपू है साबुन है।

रेड कलर से सजाया गया है और केंट है।

और दो पला परास का पेड़ है एक बड़ा सा मकान है मकान के बाहर पोस्टर लगाया गया है व्हाइट कलर का मकान है।

बड़ा सा नदी है।

यह एक बड़ा सा हाॅल है इसमें दो आदमीन लग रहा है।

सामने शीशा का लगाया गया सामने सीढ़ी है ब्लैक कलर का एक डस्टबिन है नीला कलर का बड़ा सा टी_वी है।

गेट भी है।

बहुत सारा सामान है।

यह एक बड़ा सा मकान है।

एक रोड पे लेडीज खड़ा है।

पोस्टर लगाया गया है खाने वाला।

यहां पे दो दुकान है एक क्लिनेड है।

और एक प्रज्ञा केंद्र है एक आदमी है बाहर में बहुत सारा कुर्सी है।

एक बड़ा सा बस और इसमें व्हाइट कलर और रेड कलर का पेंट किया गया है।